और सीट की ब्लू कलर की है यहाँ पे लाइनिंग -वाईनिंग है।

और पेड़-पौधे भी लगे है। बाइक्स खड़ी है। यहाँ पे एक्टिवा भी रखी हुई है और अ शॉप पे--

और हरे-भरे पेड़_पौधे लगे हुए है पहाड़ बने है।

चल रही है और चद्दर लगी हुई है और एक बल्ब दिखाई दे रहा है ऑरेंज की कलर की लाइटिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ नजर आ रही है कुछ आ --

फोटो रियलमी मोबाइल से ली गई है एंड बाल्टी यहाँ पे रख --

आग जल रही है और कुछ लाइटिंग भी लगी है लगी हुई है ऑरेंज कलर की और एक टब दिखाई दे रहा है।

रखे हुए है और टिश्यू पेपर भी रखे है और मेन्यू कार्ड भी है और चेयर लगी हुई है।

और पेड़-पौधे भी यहाँ पे लगे हुए है। गार्डनिंग बहुत ही खूबसूरत की गई है। लोग आते-जाते दिखाई दे रहे है।